अलग-अलग प्रकार की मछलियां रखी हुई हैं। ये सभी मार्केट में बेचने के लिए लाई गई हैं।

दो किनारे और बीच का स्तम्भ दिखाई दे रहा है इसके उपर की चोटी भी नज़र आ रही है।